यह दृश्य एक तालाब की है जिसमें अअ एक छोटे से झरने से जल गिर रहा है। वहां --

अम यहां मम सामने दूर में प्रतीत होता है इसकी मरम्मती चल रही है और यहां--

और यहाँ अम लोहे की सभी मशीने रखी हुई है और इसमें रंग बिरंगे लाइटे लगी हुई है ।

यहां ब्लू रंग की चेयर और वो ब्राउन रंग की चेयर ब्लैक रंग की चेयर सभी लगी हुई हैं।